हमें यहां एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय नजर आ रहा हैं।

एक चम्मच बी दिखाई दे रही है।

हमे यहां एक स्कूल का दृश्य दिखाई दे रहा है।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

ऊपर घास बिछी हुई नजर आ रही है।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

हमें यहां एक मकान का दृश्य दिखाई दे रहा है।

हमे यहां एक होटल का रूम दिखाई दे रहा है।

अंदर कुछ सोफा लगे हुए नज़र आ रहे है।

गेराज के अंदर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है।

हमें यहां एक ट्रेन की पटरी दिखाई दे रही है।

हमें यहां एक एस_बी_आई बैंक की ब्रांच लग रही है।

हमें यहां एक कांच की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

एक पानी के मटके भी दिख रहे है।

हमे यहां एक ऑपरेशन थिएटर दिख रहा है।

हमें यहां पर बस स्टैंड दिखाई दे रहा है।